कांधे पर गमछा है बैगनी कलर का इस साइड औरत ने साड़ी पहनी है उसके हाथ में ग्रीन कलर का कुछ पकड़ा हुआ है एक साइड में आदमी का आधा हिस्सा दिख रहा है साइड में दीवार में पोस्टर है।

टोपी बिलाक कलर का पहना है चश्मा पहना है उसका चेहरा दूसरे तरफ है एक पेंट है जो रखवा कलर का है‌ एक बड़े से पुल दिख रही है।

साइड में बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं कुछ छोटे से पाच में चढ़ रहे हैं साइड में लाइटिंग भी वाइट कलर की हो रही है बाहर रोड में भी बहोत सारे लोग दिख रहे हैं आसमान बला --

ऐसा लंबा-सा पिनडा है जिसकी साइड में बहुत सारी लंबी-लंबी टेबल रखी हैं| साइड में बच्चे लोग बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए जिन्होंने कपड़े ब्लू कलर के पहने हैं।

बहुत सारी दुकाने हैं अंदर में बहुत सा भीड़ है बीच में रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां है एक व्हाइट स्कूटी है एक ऑटो है जो ब्लॉक एंड येलो कलर में है।

सोरा पक्के का घर दिख रहा है जिसके ऊपर में एक रेड और एक आसमानी कलर का चक्का है साइड में पिंक कलर का चक्का तंग रा ये साइड में एक सीडी रखा हुआ है।

पक्के का बड़ा सा रूम है जिसमे व्हाइट कलर लगा है सीलिंग भी व्हाइट की है उसमे लंबे-लंबे से पाइप गये है एक मशीन है जो व्हाइट कलर का है नीचे पे उसकी स्टील कलर है ऊपर मे चोंगा सा बना हुआ है।

एक बड़ा-सा पक्के का घर है जिसके ऊपर का सीलिंग व्हाइट है जिसमे व्हाइट कलर की लाइटिंग है सामने मे एक घड़ी लगा है उसके नीचे कुछ पोस्टर लगे हुए है।

और बहुत सारे व्हाइट कलर के बड़े बड़े से बोरे है और उसमे एक और आदमी बैठा है जो यैलो कलर का हेलमेट पहने हुए है दूर मे तीन लोग खड़े हैं दो ने पिंक शर्ट पहने हुए है।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

शर्ट पहना है ब्लू जीन्स है साइड मे एक आदमी खड़ा है जिसने ले-रेड कलर की चेक की शर्ट पहनी है सर पर टोपी है हाथ पे ग्रीन कलर का ग्लव्स है पीछे मे और एक रोड बड़ा सा --